कुछ लोग घूमते हुए नजर आ --

जहां पर एक सोफा रखा हुआ नजर आ रहा --

इस इमेज में सामने यहां पर एक मॉल दिखाई दे रहा है जहां पर हैंगर में कपड़े टंगे नजर आ रहे हैं।

यहां पर एक दुकान बड़ी सी नजर आ रही है और अंदर कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं।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

पर सहनी जी वेजिटेबल्स लिखा नजर आ रहा है।

इस इमेज मे सामने एक पार्क दिखाई दे रहा है जहाँ पर --

घर दिखाई दे रहे हैं।

इस इमेज में सामने यहां पर सब्जी वाले दिखाई दे रहे हैं।

इस इमेज में सामने यहां पर एक हॉल दिखाई दे रहा है जहां पर --

सामने गेट भी दिखाई दे रहा --

व्हाइट बोर्ड भी दिखाई दे रहा है।